एक सैफे भी नजर आ रहा है।

यहां पे बहुत सारे वायरिंग हैं यहां पे कई सा--

यहां पर नीचे बारीक बारीक घास नजर आ रही है।

बिल्डिंग के ऊपर दो पानी के टंकी नजर आ रहे हैं।

यहां पे फव्वारा नज़ नजर आ रहा है यहां पर छोटे-छोटे पॉट्स नजर आ रहे हैं दरख्त नजर आ रहे हैं यहां पे दो लोग धरे हुए हैं।

यहां पर कुछ और यहां पर कुछ फेस्टिवल चल रहा है।

लिखा हुआ है यहां पे टीचर्स है यहां पे स्टूडेंट टेबल के सामने चीजें लेकर ठहरे हुए हैं।

यहां पे बड़े बड़े नारियल के दिरख्त नजर आ रहे हैं।

वहां पर एक नीचे छोटे छोटे से पौधे नजर आ रहे हैं यहां बीच में एक--

यहां पर बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं नीचे कचरा नजर आ--

यहां पे पोस्ट पर कुछ लिखा हुआ--

यहां पे ये फोटो खींची जा रही--

यहां पर आसमान नजर आ रहे रंग बिरंगे आसमान नजर आ--

यहां एक पार्क है पार्क में--

बड़े-बड़े चेयर रखे हुए हैं है दो छोटे चेयर रखे हुए --

यहां पर ऊपर बैलून नजर आ रहे हैं। यल्लो ग्रीन रेड ब्ल्यू व्हाईट ---

दोसी और चटनी रखी हुई है निचे मोस का गत्ता रखा हुआ --

यहां पे दो लोग नजर आ रहे हैं जो नीचे पानी नजर आ रहा है पानी में--

उसकी पूरी एक्सीडेंट हो गया है यहां पे एक स्कूटी है स्कूटी के ऊपर हेलमेट र--

ये है यहां पे सामने का पाठ पूरा बिखर गया।

है ऊपर साउंड बॉक्स रखा हुआ नजर आ रहा--

दिख सका हुआ है उसके ऊपर नो स्मोकिंग लिखा हुआ है।

ये जंगली घास उटी हुई है यहां पे कोई सत्थर--

यहां पर एक रास्ता नजर आ रहा है। रास्ते में--

ये बिल्डिंग नजर आ रही है यहां पेटी पे--

डेपो नजर आ रही है यहां पे बैनर लगाए हुए हैं।

यहां पर एक फिलिट्रॉनिक शॉप है जहां--

मेज नजर आ रहे हैं ऊपर चेयर नजर--

और औरतें सिर पर पल्लू ली हुई है हाथ ऊपर उठाए हुए हैं।